उनके पास मैं ही गाड़ी को ठीक करने का समान भी रखा हुआ है।

और छोटे - छोटे पेड़ पौधे भी उगे हुए है।

यह एक सड़क है जो बिल्कुल खाली है यहां पर कोई वाहन नहीं चल रहा है।

और पार्क के किनारो पे बड़े बृक्छ लगे हुए हैं।

यह एक इमारत के बाहर पानी के फुव्वारे लगे हुए हैं।

और सामने एक व्यक्ति के हाथ में एक ड्रोन है।